जिसमें बहुत सारे आदमी और औरतें भी दिखाई दे रही हैं।

और यहां पे भुप बत्ती भी रखी हुई है।

और यहां पे मशीन भी रखी हुई है।

और यहां पे बहुत सारे पंखे भी लग रहे है।

और यहां पे लाइट भी जल रही है और यहां पे एक आदमी नजर आ रहा है।

और वहाँ पे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक लकड़ी की फिटिंग हो रही है और यहां पे बहुत सारे सामान लग रहे हैं।

और वहां पे घास भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पे एक झील आ रही है पानी की और यहां पे एक खंभा खड़ा हुआ है जिसमें कुछ तार आ रहे है।

और यहां पे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रखे हैं और यहां प एक टीन लोहे की दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे एक मेज़ भी दिखाई दे रही है।

यह एक बहुत बड़ी दुकान है।

और अलमारियां भी रखी हुई है।

और यहां पे एक बेड भी का तकिया रखा हुआ है।

और यहां पे एक कांटा भी रखा हुआ है।

जिस पे लाल रंग का रंग हो रहा है।

यह एक बहोत बड़ा ट्यूबवेल है।

और यहां पे लो एक विंडो भी दिखाई दे रही है जिसमें--

और यहां पे एक ए_सी भी लग रही है।

इसके पास एक लाल कलर का गेट खड़ा हुआ है।

और यहां पे लाल रंग का गेट भी लग रहा है और यहां पे पे --

और यहां पे एक कपड़ों की दुकान भी दिखाई दे रही है जिसमें बाहर कपड़े भी लग रहे हैं।

जिसमें बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस पे पीला कलर हो रहा है।

और यहां पर रंग बिरंगी डी_जे भी लग रही है।

और यहां पे ए_सी भी लग रही है।